ये एक सामने गार्डन दिख रहा है और यहां पर कुछ जाली वाली दीवाल उठी हुई है।

और कुछ लाइट वगैरा भी यहां पर बड़ी बड़ी फोकस में लगी है।

नीचे कुछ थोड़ी सी ईंटे जमी हुई है पास में एक अह मैदान जैसा दिख रहा है।

नीचे कुछ कार्ड का सामान रखा हुआ हैं।

और यहाँ फिरोजी कलर का गेट लगा हुआ है।

डायबिटीज सेंटर है ये एक हॉस्पिटल है जिस पे बोर्ड लगा हुआ है ऊपर की तरफ और यहां कुछ पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

और अंदर की ओर एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है यहां।

इसमें टेड छ थ्रेडस थ्रेड्स के नाम से नाम लिखा हुआ है।

यहां कमरें में एक चेयर लगी हुई है।

जिसके ऊपर आर्टिफिशियल फ्लावर रखे हुए हैं।

यहाँ सामने एक मैदान जैसा दिख रहा है।

राइट साइड में कुछ दुकाने है सामने एक काउंटर दिख रहा रखा हुआ दुकान के अंदर--

सामने ब्लैक कलर की कार रखी हुई है तीन चार वाइट कलर की कारे भी खड़ी है यहां और यहां कुछ बाइक और एक्टिवा खड़ी है।

अंदर भी कुछ सामान रखा हुआ दिख रहा है यहां वूमेंस का पूरा सामान मिलता है।

यह एक शॉप दिख रही है जो पूरी बिल्डिंग कांच की बनी हुई है जिसमें लिखा है मेक मै--

और यहां नीचे की ओर काफी सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए दिख रहे--

जिसका नाम नेशनल ऑटो पार्ट्स है यहाँ पर ऑटो के पार्ट्स मिलते हैं हमारे यहाँ सब प्रकार के पार्ट्स मिलते हैं।

और यहां पर दो बाइकें खड़ी हुई दिख रही है।

कोने में एक लोहे का गेट लगा हुआ दिख रहा है जिसके अंदर कुछ सामान--

और आस पास सफेद कलर कारें खड़ी हुई दिख रही है।

और उसके सामने एक गेट लगा है बड़ा सा एस_ए_आई भर्ती का एस_ए_आई भर्ती का ये वो है।

यहां काफी सारी चेयर्स लगी है बैठने के लिए।